इस फोटो में सफ़ेद रंग की दीवार पे बोहोत सारे तस्वीर लगे हुए हैं।

एक अलमीरा भी रखा हुआ है दो फोटो लगे हुए हैं और एक पंखा भी लगा हुआ है।

और इसमें कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं और ये लोग कुछ और ये दोनों हिरण कुछ खा रहे --

ये एक शोरूम का फोटो है इस शोरूम में बोहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसमें दो आदमी भी खड़े हैं।

ये एक घूमने का जगह है यहाँ गुफा बना हुआ है इस गुफा के अंदर एक लड़का जा रहा है।

ये एक जिम है इस जिम में दो लड़के हैं एक लड़का बेंच पे बैठा हुआ है।

और वो जिम कर रहा है उसने काले रंग के टी-शर्ट और काले रंग के ट्रॉउज़र पहन रखी है और एक लड़का खड़ा है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है इस पेट्रोल पंप पे एक लाल रंग की कार खड़ी है।

ये एक मंदिर का फोटो है। मंदिर का रंग सफ़ेद और लाल रंग का है।